यह फोटो किसी घर की दिख रही है जहां पर दरवाजा एक हाथ का बना हुआ है सामने कुछ फोटो लगी हुई है।

ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुईं हैं एक कुर्सी भी राखी है जो काले कलर की है और एक टेबल पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

यह फोटो ये दो ऑटो दिख रही है ऑटो में एक व्यक्ति बैठा है एक व्यक्ति ये स्टूल --

यह एक स्टोर या दुकान है जिसके बाहर कुछ मोबाइल सही करने के कार्य लिखे हुए हैं।

यह फोटो किसी मंदिर की दिखाई दे रही है जहां पर एक पुजारी बैठा है और दो व्यक्ति खड़े हैं।

यह फोटो किसी ऑटो के एजेंसी लग रही है वहां पे बाहर दो ऑटो खड़ी है।

और जीस पर लिखा है पंचवटी उड़ान अंदर कुछ पेड़ लगे हैं जिनकी कटई की गई हैं।

ये रात के समय की फोटो है और अंदर लाइटें जल रही ऊपर अमूल नाम भी --

इस फोटो में बहुत सारे गुब्बारे लगे --

बहोत ही अलग अलग कपड़े पहने हुए है ये किसी स्टेज का प्रयोग कर रही है।

पहने हुए हैं ये किसी स्टेज का प्रयोग कर रही है।